इस दृश्य में एक झरना जैसा दिख रहा है।

और पीछे बहोत से पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

लड़के ने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

पीछे की तरफ एक घर दिख रहा है और घर में ब्लैक कलर की गेट भी दिख रहा है।

नदी का जो ऊपर आसमान हैवो बहुत ही धुंधला धुंधला दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा सा ओपन टाइप का खिड़की भी है।

पीछे कुछ बैठने का गैलरी सिस्टम दिख रहा है।

सामने एक घर है जिसका शत का कलर ग्रीन कलर है।

बिल्डिंग बहोत ही ऊंचा है।

मार्केट के बीच में एक बहुत बड़ा पेर भी है।

जिनमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं।

रूम के ऊपर मे एक फैन भी है।

सामने एक पानी के बहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है।

लैंप भी लगा हुआ है।

रूम का बेडशीट का कलर व्हाइट कलर है।

घर में दो रूम है।

स्विच बोर्ड भी दिख रहा है।

जिसके नीचे एक वाइट कलर का गमला टंगा हुआ है।

कारपेट के उधर एक आंटी खरा हुआ है।

बस के साइड में एक घर भी दिख रहा है।

दरवाजे में एक आदमी और एक औरत खड़ा हुआ है।